फुल के हैं और कुछ खाली पौधे भी हैं।

जिसमें कि रैक में बहुत सारी मिठाईयां रखी हुई हैं।

और उपर में लाइटें भी लगीं हुई है सफेद रंग की--

तो इस फोटो में हमें बहोत सारी का गाड़ियां दिख रही हैं।

और पंखा भी एक लगा है दीवाल पर--

तो इस फोटो में हमें एक घर दिख रहा है।

और पीछे में एक बहोत बड़ा सा पेड़ भी है।

और नीचे में फर्श भी लगा हुआ है।

और ऊपर साइड में बहोत सारे छोटे छोटे लाइटें भी हैं।